बहुत सारी लोग यहां फिश बेच रहे हैं।

जीसके आगे कुछ लोहे का सामान रखा हुआ है।

और बिल्डिंग जो है वो ईंटों की है।

जो कि दो मंजिला शॉप है।

काफी सारी डेकोरेशन की गई है।

और रेड और व्हाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।